ये एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

और एक व्हाइट रंग की कूलर भी रखा हुआ है और एक टेप है।

यह एक मंडप बना हुआ है।

ये एक कपड़ों के दुकान है।

यहां पे बहोत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है।

इसमें मोदी जी छपे हुए हैं।

और दो गमले भी रखे हुए हैं और एक शीशे का जंगला है।

और कुछ हरे भरे पेड़ भी हैं।

और बाहर हड़े भड़े पेड़ है।

जिसमें कुछ सामान रखे हुए हैं।

और उसके ऊपर लाल रंग के जग रखे हुए हैं।

जिसके पास कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं।

और नीचे एक चटाई बिछी हुई है।

जो वाइट कलर का दिख रहा है।

इसके हाथ में एक फोन है और ऊपर नीला आसमान है।

यह एक बहुत बड़ी मूर्ति है।

औ उस खम उस खंबे में बहोत सारे तार लगे हुए हैं और नीला आसमान है।

और एक जींना बना हुआ है।

जिसका कलर है एक रेड है और एक ब्लैक कलर है।

और उसके आसपास चारों तरफ बाउंड्रिग बनी हुई है।

ये एक बहुत बड़ी खेलने का मैदान है।

ये एक बहुत बड़ी फ्रिज का शोरूम है।

चॉकलेट भी रखे हैं और एक ए_सी भी है कुछ लाइटें लगी है और एक लेडिस बैठी हुई हैं।